किनारे पर जमीन पर कुछ कुर्सियां रखी हुईं है ऊपर एक ऐ.सी. लगी हुई है।

सामने ईटे की कच्ची सड़क नजर आ रही है।

सड़क ऊंची नीची है। सामने मकान नजर आ रहा है।

यहाँ आसमान पे एक हौलीकॉप्टर उड़ रहा है।

यहाँ सामने भी लाइटे आ रहीं हैं।

यहाँ सामने सफेद और लाल रंग की माला है और ये एक ऑरेंज कलर की माला है। नीचे --

सामने एक शॉप नजर आ रही है।

किनारे पर कुछ माशीन्स और एक इनवर्टर है।

यहाँ सामने एक बाउंड्री है जिसके पीछे से छोटा सा पेड़ नजर आ रहा है।

बीच में दो लक लड़कियों की पोस्टर बनी हुई है।

कुर्सी रखी हुई है। स्टेज को काफी सारे फूलों और --

यहाँ बीच में एक टेबल बना और इसके चारों तरफ लकड़ी काटके कुर्सियां बनाई गई हुई है।

एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर के बॉल पर निशाना लग रहा है।

यहाँ सामने काफी सारे लाइट लगी हुई है। कपड़े का टेंट बना हुआ है। सामने बंदूक रखा है।

एक लोहे की रेलिंग बनी हुई हैं।

किनारे कुछ स्पीकर्स लगे हुए हैं।

सामने काफी सारे दुकान नजर आ रहे है किनारे पर काफी कार वगैरह हैं।

यहाँ आगे एक सफेद रंग की कार है। पीछे एक लाल रंग की कार है।

पौधे लगे हुए हैं और छोटे-छोटे घांस लगे हुए हैं।

एक बड़ा सा टावर नजर आ रहा है।